बगल मे एक गेट लगी है जो काले रंग की है और एक डिवाइडर बना हुआ है सफेद रंग और काले रंग की निचे फर्श किया गया है।

पोस्टर लगाए गए है बालकनी नीचे टाइल्स बीछा हुआ है टेबल मे बहुत सारे समान रखे गए है जो नीले रंग के है डब्बे रखे गए है।

एक छोटा सा ड्रओर बना हुआ है कांचे लगी हुई जो गोलाकार की और चंद्रमाकार की गोल काच बनी हुई है नीचे टाइल्स लगी हुई है।

बगल से जो कार जा रहा है जो सफ़ेद् है पेद पौधे हरि पत्ति है खंबे खडी हुयी है बगल मे घर बना हुआ है जो पिले रंग की है गाड़ी खड़ी है जो काली सफ़ेद लाल गाड़ी है।